सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर पीले और लाल अक्षरों से लिखा हुआ है सामने गाड़ी खड़ी है।